यहां पर हमें दिख रहा है कि किसी चीज की ओपनिंग करी जा रही है।

जो नॉनवेज खरीद रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं।

जोकि तीन दुकानें हैं और जिसमें से हमारी एक दुकाने बंद है और दो दुकान --

यहां पर हमें दिख रहा है बहोत सारे फूलों की दुकान है।